बोहुत सारी मछलियां दिखाई दे रही है और मछलियां ऐसा लग रहा हैं कि किसी बड़े दुकानदार दिखाई पड़ रहा है।

दिखाई पर रहा है।

यहाँ पे हर एक पड़ रहे और बोहोत सारे --

ये किसी बड़े हॉस्पिटल का नजारा यहाँ पे दो तीन डॉक्टर भी बेठे हुए हैं।

कोई ये किसी जंगल का दृश्य दिखाई पर रहा है। यहां पे पानी पानी है यहाँ पे।

ये ये कही का दृश्य दिखाई पड़ रहा है जहां रोड टूटे हुए है और एक बन्स जा रही है उसके बगल में बाइक दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक भैस पानी पी रही है। दो व्यक्ति दिखाई पर रहे है। यहां पे नाले भी दिखाई पर रहे है।

ट्रैन आ रही है और यहाँ पे ऊपर से बिल्डिंग भी बना हुआ है।

एक व्यक्ति मोबाइल से अच्छी तरह से फोटो क्लिक कर रहा है और बहोत अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है।

ये किसी बड़े स्कूल या होटल वगेरा का दिखाई पड़ रहा है जहां पे बच्चे अपनी-अपनी क्लासेज करते है और लोग अपने-अपने बच्चों को पढ़ने के लिए यहाँ पे भेजते है बहुत अच्छा स्कूल दिखाई पड़ रहा है।

यहाँ पे बोहत अच्चे घर को सजाया --

और यहाँ पे बोहोत अचे -अचे तरह से बिक्री हो रही है। यहाँ पे लगता है सजाया गया है गुब्बारा सजाया गया है। अचे से सजावट सी सजावट बोहोत अच्छी सी लग रही --

कोट टाई पहनकर दूल्हे के जैसे खड़ा हुआ है और यहाँ पे हॉल पर पत्तियाँ भी लगाई गई है बहुत अच्छा सजाया --

यहाँ पे बोहत अच्छे दिखाई पड़ता है और यहाँ पे बोहोत अचे से सजाया गया --

कोई ये कोई नजर आ रहा है जहाँ पे बोहोत सारी गाड़ी टेम्पो और सारी चीज दिखाई पड़ रहे है। बोहत अच्ची सी दृश्य दिखाई पड़ रही है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे बारीश का मौसम है।